एक बड़ा-सा खेत हैं और मैदाने हैं जिस मैदानों में हरी घास दिख रहे हैं जमी हुए हैं।

ज-आने जाने का अगल बगल हर भरे पेड़-पौधे है बादल नीला है।

एक रास्ता हैं जो आने जाने का रास्ता बना हुआ है अलग बगल जंगले है जिस जंगलों मे हरे घाँस जमे हुए--

एक बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरी घास जमी हुई है और कुछ लोग मक-मैदान में खड़े हुए हैं ।

आ झंडे फेहरा रहे हैं और अगल-बगल हर हरे-भरे